सामने मुझे फर्श दिख रही है।

और यहाँ पर ओवरब्रिज भी बना हुआ है। जिसके पास में एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे घर बना हुआ --

सामने एक दुकान बनी हुई है जिस पर लाल टीन सेट पड़ा हुआ है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक गुफ़ा है। जहाँ पे काफी अंधेरा है। थोड़ी सी सूरज की रोशनी भी आ रही है।

यहाँ पे मुझे तीन कटे पेड़ लग दिखे रहे हैं जो भूरे रंग के हैं और काले रंग के हैं।

इसके अंदर सफ़ेद रंग का कपड़ा दिख रहा है। जहाँ की जमीन जो है।

यहाँ पर पानी है जो मठमैले रंग का दिख --

सामने एक रोड दिख रही है। रोड की जो रंग है वो भूरी है।

यहाँ पे सूरज की रौशनी पड़ रही है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफ़ेद रंग की है।

यहाँ पे सीढ़ी भी लगी हुई है।

जिसके नीचे बोरियाँ रखी हुई हैं जो सफ़ेद और नीले रंग है। जिसके अंदर --

पोशाक पहने हुए हैं जिस के पास में एक बाइक है।

और नीचे जो है दो लोग बैठे --

यहाँ पर एक पुल बना हुआ है।

यहाँ पे कुछ वाहन खड़े हुए हैं।

जो चोखंटा है जिसके बाहर ईंटे लगे हुए हैं।

जोकि एटीएम पे खड़े हुए हैं। एटीएम पे एक बोर्ड लगा हुआ है स्टेट बैंक --

और आसमान का रंग नीला है। सफ़ेद --

इसके सहारे से एक ट्रोली बैग रखा हुआ है जो बैंगनी रंग का है।

यहाँ पे पास में एक टिन शेड पड़ा हुआ है और एक गेट लगा है जो खुला हुआ --

यहाँ पे एक आदमी का हाँथ दिख रहा है जिसने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। मोबाइल से फोटो ले रहा है वो।